और यह करियाने की दुकान है।

यहां पर हर एक समान मिलता है।

यहां पर बहुत अधिक मात्रा में दुकानें हैं।

बिल्डिंग्स बनी हुई हैं कुछ सीढिएं लगी हुई हैं।

यहां पर बहोत सारी मशीने पड़ी है।

यह एक बहोत ही बड़ा मैदान है जिस पर--

और यहां एक मेज लगा हुआ है।

यहां पर इन्विटेशन कोड कार्ड पिल मिलाये जाते हैं यहां पर शादी के कार्ड --

बहुत स अधिक से अधिक मात्रा में मैट रखें हुए है।

बहुत अधिक मात्रा में पौधे लगे हुए हैं। बाउंड्री यों पर कुछ बड़े बड़े पेड़ लगे हुए हैं।

यहां पर बहोत सारी लाइटें जल रही हैं।

पास में बहोत सारी टीचर्स खड़ी है।

यह एक किरयाने की दुकान है और यह बहुत ही बड़ी है।

जैसे कोल्ड ड्रिंक फ्रूटी पिज़्ज़ा माजा ।

यहां पर बैठने के लिए चेयर्स लगी हुई हैं।

बहुत ही सुंदर डेकोरेशन की गई हैं।

और यहां पर बहुत ही बड़ी बड़ी जालियां लगी हैं जोकि व्हाइट और--

ब्लू कलर की हैं अलग अलग तरह की लाइटें जग रही--

यहां पर बहुत सारे रूम बने हुए हैं।